यहां पे एक मेज पड़ी हुई है सामने हरे रंग की कुर्सी पड़ी है।

यहां पर दो आदमी खड़े हुए जिन्होंने अपने सर पे कपड़ा बांध रखा है।

सामने घर बना हुआ है यहां पर छोटी छोटी घास उगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर पीछे चर्च का सिंबल बना है आस पास परदे लगे हैं।